निचे की तरफ एक छोटी सी मूर्ति छोटी सी मंदिर में स्थापित है इसके ऊपर झंडे लगे हुए हैं ऊपर की तरफ काफी लाइट्स लगी हुई हैं नीले रंग की साईड पे भी काफी लाइट्स नजर आ रहीं हैं बाहर की तरफ रिबन्स लगे हुए हैं साईड में निचे की तरफ कुछ पेड़ --